और सामान भी दिख रहा है अनेको प्रकार के।

और इसे गुबारों से सजाया गया है।

जो एक टेबल पर रखी गयी --

और इसमें एक औरत पूजा कर रही है।

जिसका पोस्टर सामने दिख रहा है उसके उपर करकट --

रास्ते में जा रहा है एक व्यक्ति बैठा है।

तथा दुसरे व्यक्ति क्रॉस अ रोड क्रॉस कर रहा है।

बड़ा गेट लगा हुआ है तथा उसके --

क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं।

गाड़िया खड़ी हैं तथा इसके --